ब्लू कलर की पैंट पहने हुए इंतजार में बैठा हुआ है।

उन झूलो का रंग लाल हरा नीला पीला--

यहाँ पर वाइट कलर की दिवार है रेड कलर का फ्लोर है।

जेसा की आप इसमे देख सकते है ये एक बंसल स्टोर है जिसके बहर बहोत सारे लोग खडे हुए है और इसमे पेप्सी बिक रही है यहाँ पर --

बहुत सारे लोग खड़े हुए है जो की कुछ खाने का सामान लेने के लिए इंतेज़ार में--

और इसको अंग्रेजी में हम इंडिया पोस्ट बोलते है और ये--

अंदर की एक अंदर की और एक लेडिज खड़ी हुई है।

अगर आप के घर पर कोई मरा नहीं है तो आप उसे--

जेसा की आप देख सकते है यह एक सलोन है और इस सलोन में बहोत सारे--

यहाँ पे बहुत सारे क्यू आर स्कैनर रखे हुए है --

जैसा के आप इसमें देख सकते हैं की --

ब्लू कलर के और विभिन्न प्रकार के कपड़े रखे हुए है इसमें --

जैसा के आप इस्पे देख सकते है की यहाँ एक--

जेसा की आप देख सकते की इसमें एक बच्चा बेठा हुआ है और वो--

रोप लगी हुई है जिसमे की आप जिम कर सकते है और यहाँ पर एक--

बहोत सारे लाइट्स लगे हुए हैं कुछ ब्लू हैं कुछ व्हाइट हैं कुछ ग्रीन हैं।

तो अन्दर की और जा रहे है यहाँ पर एक दूकान है और यहाँ--

इसमें आप देख सकते है की एक लाई म्यूजियम है जिसमे की बहोत सारे डायनासोर के मोनुमेन है।

यह एक पार्क का इमेज है जिसमे की बोहोत सारे झुले लगे हुए है।

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है जो वाइट कलर की है एक गाड़ी और खड़ी हुई है।

जैसा की आप ये देख सकते है ये एक मंदिर है जिस पर लिखा है प्राची--

यहाँ पर बहोत सारी सीढिया है और इस मंदिर का कलर लाल है।

यहाँ पर बहुत सारे झंडे लगाए गए हैं।

जैसा की आप इसमें देख सकते है यह एक तालाब है जिसमें--

जैसा की आप इसमें देख सकते है यह एक दुर्गा पूजा का व्यू है और इसमें--

जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यह एक घर है।